हिंदी और इंग्लिश में कुछ नाम लिखा दिख दे रहा है एक बच्चे का फोटो दिखाई दे रहा है सामने कुछ कुर्सी रखी दिख रही है उसके सामने एक दीवार है जिसपर खंभे दिखाई दे रहे है वाइट कलर के दरवाजे दिखाई दे --

इसके ऊपर कुछ बैनर लगा है साइड मे कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे है जिसके ऊपर दो तीन बैनर लगे दिखाई दे रहे है ऊपर में चढ़ --

एक ग्राउंड फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे है झूले के पास में एक बच्चा दिखाई दे रहा है।